एक देहली स्कूल है बिल्डिंग के बगल केक है गुड़िया वाला। गुड़िया दो चोटी करे है।

वो उपस सब एक बिल्डिंग में बिल्डिंग चार-पांच मंजिल की बिल्डिंग है। यहाँ आदमी भी बोहोत सारे खड़े हैं।

लाल कलर का कपडा बंधा हुआ हैपोइया डली --

इधर बहुत सारे फल फ्रूट है।

सुबह का समय है दीवाल में चेयर लगी हुई है दीवाल सफेद कलर की है।